और सामने दिखाई दे रहा है प्ले ग्राउंड और उसके सामने है बहुत सारी गाड़ियां भी।

जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे-छोटे-छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और वो सामने काफी व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और अपना काम --

नजर आ रहे हैं और सामने देखा जा स काफी रद्दी भी पड़ी हुई--

और एक सड़क दी गई है छोटी सी आस में पास पानी--

जैसे कि आपको सामने एक छोटा सा ब्रिज नजर आ रहा है।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

और आसे पासे एक सामने पर्दा व्हाइट कलर का नजर आ रहा है और आसपास का काफी पेड़ लगे हुए हैं।

जैसा कि आपको सामने एक क्लीनिक नजर आ रहा है जो की तीन मंजिल बना हुआ है उसके साथ में एक आपको इमारत भी नजर आ रही हैं।

जोशी के साथ बनी हुई है और उनको--

जैसा की सड़क के ऊपर खड़ी हुई है।

जिसमें कारें खड़ी हुई हैं और बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे--

सामने में जो कि व्यक्तिगत खेल रहे हैं उनसे भाग रहे हैं जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है।

जैसे कि अलग अलग प्रकार का है।

और बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं बीच में देखा जा सके तो और रंग बिरंगे--

जैसे कि सामने देखा जा सकता है सामने--

और सामने बहुत अच्छे से खूबसूरती से तैयार किए गए हैं।

दिखाई दे रहे हैं जैसे कि छोटे छोटे--